इस तस्वीर मे हमे यहाँ पे एक घर दिखाया गया है जिसका कलर व्हाइट हैं और यहाँ पे व्हाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ हैं बाहर यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ हैं।

इस तस्वीर मे हमे ये यहा पे इस इंस्टीट्यूट दिखाया गया है और इसका गेट लगा हुआ है और इसमे अम यहा पर हमे येल्लो कलर दिखाया गया है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर यहा पे बड़े बड़े पेड़ दिखाये गए है।

और इसमे तेर रहे और यहा पे बड़े बड़े पथर दिखाए गए है बड़े बड़े पथर के अलावा यहा पे छोटी छोटी पहाड़ बने हुए है जिसमे घास भी दिखाई गई है।

इसके अलावा हुमे आसमान दिखा गया आसमान ब्लू व्हाइट कलर है और यहा पे सड़क है जिसमे हमे रेड कलर दिखाया गया है और यहाँ पे--

ये किराना वगैरे और बहुत ही सामान की यहाँ पे ये अलमारिया लगी हुई है जिसमे ये येल्लो ब्लू ग्रीन सारे कलर की कु्छ पैकेट्स रखी हुई--

इस तस्वीर मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है ये खाने की दुकान है कुछ स्टॉल लगा हुआ है यहा पे जिसमे एक तार है। जिसमे सारे भी खाने जीतने भी खाने की चीजे है वे सारी उस --

पेड़ के अलावा यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा इसके अलावा कुच्छ बड़ी बड़ी बिल्डिंगस दिखाई गई है और यहा पे एक स्कूटी है।

ऑरेंज ब्लू ग्रीन और इन सारे कलर की लगी हुई है।